एक फ्रिज भी वहां पर रखा हुआ है।

और एक साइड में एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

और बहोत सारी कुर्सी भी और एक फ्रिज रखा हुआ है।

और ऊपर एक बैंक का पोस्टर भी लगा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा मच्छी की ठेली है।

और साइड में दो खिड़की भी वहां पर लगी हुई है।

और वहां पर बहोत सी लड़कियां नित्य कर रही है।